पीछे एक दरवाजा है जो लाल रंग से बना हुआ है।

--खड़े हुए हैं दो कार खड़ी है एक सिल्वर कलर की एक सफ़ेद रंग की कुछ व्यक्ति खड़े हुए हैं बाहर कार का रंग सफ़ेद है।

इसके नीचे पानी बह रहा हैं पत्थर का रंग नारंगी हैं।

यह एक रोड है जो बंद दिख रही है इस तस्वीर में तीन बैरियर लगे हुए है एक पीला एक जाली वाला और एक नीला और एक लाल इसमें दो व्यक्ति नजर आ रहे हैं।

पहाड़ पे भी हरियाली दिख रही है।

यह एक बिल्डिंग दिख रही हैं इसमे साइड मे पेड़ लगे हुए हैं पीछे पीले रंग की बिल्डिंग हैं ऊपर आसमान दिख रहा हैं ।